यहाँ बहोत सारी लाइटें भी लगी हैं।

और इस घर के बाहर में एक पेड़ भी है।

यह नदी बहुत ही गहरी है।

यह एक सड़क है। इस सड़क पर बहुत सारी गाडियां खड़ी हैं। यहां एक लड़का भी खड़ा है और यहां एक रिक्शा भी खड़ी है और इसके बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और यहां एक गेट भी है।